ये गोल्ड प्लस नाम का मास्क हैं ब्यूटी म-मास्क हैं इसमें शहनाज़ हुसैन लिखा हैं।

ये रात की पिक्चर है जहां पे खूब सारे कार है और एक कार है जो हुई है।